और यहाँ पर कार रखी हुई दिख रही है व्हाइट कलर की दिख रही है और यहाँ पर कोई पोस्टर दिख रहे है पोस्टर मे कुछ यहाँ पर पिक्स बने हुए दिख रहे है और यहाँ पर आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर मे दिख रहा है।

क्लोथ्स रखे हुए दिख रहे है क्लोथ्स अलग-अलग कलर के दिख रहे है एक लेडिज खड़ी हुई दिख रही है जिसने पिंक व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है ।